एक कार का रंग काला है।

बीच वाले कार का रंग ग्रे है।

कार और स्कूटी के सामने कुछ पेड़ पौधे लगाए गए।

आसमान नीला है आसमान में सफेद रंग का बादल है।

घर के पीछे का घर के पीछे काफी सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

मंदिर के पीछे काला रंग का बकरी है।

पेट्रोल पंप पे कुछ लोग अ अपनी गाड़ी के टैंक टैंक में पेट्रोल डलाने के लिए खड़े हैं।

पेट्रोल पंप के सामने एक ऑटो अ जा रहा है।

एक सोलर स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है।

एक लड़का है जो की सफेद रंग का हाफ टी शर्ट पहना हुआ है।

फील्ड में काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

ये जगह बहुत सुंदर है।

जमीन का रंग सफेद है।

हाथ में चूड़ी पहनी हुई है।

यह एक बस स्टैंड है।

इसके पीछे एक पेड़ है आसमान में बहुत सारा बादल है।

एक स्टॉल में काफी सारे सामान रखे हुए है सजा के।

एंट्रेंस के गेट अंदर दो कार है और काफी सारी गाड़ियां पार्क की गईं हैं।

नदी में काफी सारे पौधे उगे हुए हैं।

मिर्ची जमीन पे बिखरा हुआ है।

जिनके सीलिंग पे लाइट लगा हुआ है।

बैलून का रंग ऑरेंज और ग्रीन है।

ईमे बहोत सारे लीची रखे हुए हैं।

थाली जो हैं एक ब्लू कलर के बास्केट के ऊपर रखा गया हैं ।

लीची में पत्ते लगे हुए हैं पत्ते का रंग हरा है।

लड़कियां क्रीम कलर का स्कर्ट पहनी हुई है और लड़के क्रीम कलर का जींस और हाफ पैंट पहने हुए हैं।

कुछ बच्चों टोपी नहीं लगाए हुए हैं ।

काउंटर पे एक इंसान बैठा हुआ है।

बोरा में कुछ सामान है बोरा का रंग सफेद और लाल रंग का है ।

इस रूम में एक साइकिल भी है।

खिड़की बंद है खिड़की पे पर्दा बिछाया गया है।

दुकान का गेट खुला हुआ है जो--

के बगल में एक गमला हैं।

राड्स का रंग हरा रंग का--

शूल को लाल रंग के धागे से जोड़ा गया--

काउंटर पे कुछ मशीनें रखी गई है और एक चेयर रखा गया है।

दुकान के अंदर एक चेयर है और राज के दुकान में काफी सारे सामान रखा हुआ है।